उधर लस्सी का पिक्चर है इधर अथि इधर पानी का बोतल है उधर --

इसका मुंह ढका हुआ है मुंह नहीं दिखाई दे रहा है।

फिर इधर खेत एक देख रहा है उधर व्हाइट पेंट खोल देख रहा है।

इस फोटो में तीन आदमी खड़ा है।

खीरा है घिउरा है बैगन है--

इसमें एक होटल पर टेबुल रखा हुआ है उधर एक आदमी दिख रहा है इधर ए--

मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा तस्वीर है।

उधर कुछ खड़ा है इधर भट्ठी है ग्राउंड है इधर बहुत सारा परछाई दिख रहा उधर पेड़ का पिक्चर आ रहा उधर तलाब ए।

कोई आदमी दो सौ का पेट्रोल ले रहा है।

इसमें बहुत सारा धूल है। बहुत सारा पत्ता है इस तस्वीर में--

उधर एक व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

इस तस्वीर को आदमी देख कर बहुत खुश हो रहा है।

उधर व्हाइट कलर का पेंट है उधर एक नीला घर है।